अच्छा एरिया माहौल बना रहता है।

काफी ज्यादा उनके साथ रहना चाहिए।

ये बारकोड कर रहे हैं जो कि यहाँ पे सिटी केंटल बैंक है और --

जिम करना चाहिए सभी --.

जिम हम सब को करना चाहिए।

कोई योगा क्लास है जो कि यहाँ पर बोहुत से महिलाये योगा --

कहलाते हैं जो कि काफी ज़्यादा योगदान --